यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है हॉल के ऊपर एक स्टेज बना हुआ है स्टेज पर एक बच्चा खड़ा हुआ है जो ब्लैक कलर का शर्ट पेहना हुआ है।

मंदिर है मंदिर मे गेट लगा हुआ है जो व्हाइट एण्ड येलो कलर से पोता हुआ है और ब्राउन कलर भी है मंदिर मे एक घड़ी लगी हुई है अंदर जो रेड एण्ड व्हाइट कलर की है अंदर पर्दा लगा हुआ है रेड कलर का सामने एक लड़का खड़ा हुआ है।

यहाँ पर एक अ कमरा बना हुआ है जहाँ पर एक दुकान खुली हुई है।

यहाँ पर एक बुक स्टेशनरी की दुकान है जहाँ पर बहुत सारे कबर्ड बने हुए है जिसमें बहुत सारी बूक रखी हुई है बहूत सारे पेन रखे हुए हैं।

दुकान है यहाँ पर बहुत सारे डॉल वगेरा भगवान की मूर्तियाँ कोल्ड्रिंग और बहुत सारे कबर्ड बने हुए है जिसमे बहुत सारा सामान रखा हुआ है।